एक नदी दिखाए दे रही है नदी मे एक सीमेंट की पूल दिखाए दे रहा है जिसके उपर छड़े दिखाए दे रही है और नीचे बहुत सारी काई काई दिखाए दे रही है एक नाव दिखाए दे रही है एक सीधा--

एक बस दिखाई दे रही है बस मे बहुत सारे आदमी ऊपर चडे हुए दिखाई दे रहे सामान रखते हुए दिखाई दे रहे है बगल में एक लड़की --

पीछे एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है। सामने तार के दो खंबे दिखाई दे रहे है और मोटर साइकल खड़ी हुई दिखाई दे रही है। सामने से एक इलेक्ट्रिक ऑटो जाता हुआ दिखाई--

मुझे एक गेट दिखाए दे रहा है मैरिज वर्णन का गेट दिखाई दे रहा है जो की काफी सजा हुआ दिखाए दे रहा है नीचे पर्दे लटके दिखाए दे रहे है सामने दो आदमी--

उसने केप लगाई हुई है अंदर की तरफ एक आदमी दिखाई दे रहा है जिसने येलो कलर की शर्ट पहन रखी है जो गेट है उसको सजाया गया है बलून से।

पहन रखा उसके सिर पर टोपी रखी हुई हैं जिसमें भी सामान रखा हुआ हैं उसके पीछे तीन औरतें खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं एक बच्चा दिखाई दे रहा हैं। जिसने छोटे बच्चों को गोदी में उठाया--